इसे बैठने में बहोत ही कंफर्टेबल महसूस होता है यह लकड़ी के बने होते हैं और इसे खरीदने में भी बहुत पैसा लगता है।

जो कि देखने में भी यह बहोत अच्छा लग रहा है और यह हमें बहोत अच्छा लगता है।

जो की देखने में बहोत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है यह काम बहोत ही बारीकी और साफ सफाई से किया जा रहा है।

यह एक मैदान दिख रहा हैं इसके सामने एक बाहोंत बड़ा पहाड़ हैं।

बहुत अच्छी ब्रांड की स्कूटी दिख रही है ये बहोत ही कंफर्टेबल होती है जो कि हमें बहुत ही मदद करती है और ये बहुत अच्छी होती है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं।

और मछलियां भी बेच रहे हैं यहां पर बहुत सी तरह तरह की सब्जियां बिक रही हैं।

और यह एक कमरे की फोटो है जो कि डॉक्टर के रूम जैसा लग रहा है और एक घड़ी लगी हुई है।

जो की एक बस स्टैंड में लगा हुआ है यहां पर बस स्टैंड बहोत सारी बसें आके--

और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इस पानी के अगल बगल से जा रहे हैं।

यह एक घर जैसा दिख रहा है जहां पर बहुत सारे बच्चे व्हाइट ड्रेस में खेल रहे हैं।